मुझे इस फोटो मे सामने रोड दो ट्रैक्टर खड़े दिखाई दे रहे--

लगा है घर बना हुआ दिखाई दे रहा है रात का समय दिखाई दे रहा है।

हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहें हैं नीला आसमान दिखाई दे रहा हैं सामने--

मुझे इस फोटो में सामने दुकान वोकान खुली दिखाई दे रही--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक पहाड़ वहाड़ दिखाई दे रहा जिसमें हरे पेड़ पूड़ लगाए सामने

सामने की ओर दो चम्मच रखी हुई है एक कांटे वाली एक बिना कांटे वाली चम्मच रखी हुई दिखाई दे रही है सामने ब्लैक कलर की थाली रखी हुई दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में सामने को कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई सामने--

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने की--

ये एक पीली टंकी बाकि सब वाइट कलर की टंकी रखी दिखाई दे रही --

दिखाई दे रही सामने इसमें--

कई सारे इंसान खड़े हुए दिखाई दे रहे है हर बस के सामने एक दो इंसान खड़े हुए दिखाई दे --

इधर पहाड़ हड़बड़ी में दिखाई दे रही हैं सामने की ओ--

मुझे इस फोटो में सामने कि ओर दो से तीन--

मुझे इस फोटो में सामने को ओर एक दुकान खुली हुई दिखाई देती तो कोई --

व्हाइट कलर की लाइटिंग लगाई गई है सामने के दिवाले वाइट कलर से पोटी हुई दिखाई दे दिखाई दे रहे हैं सामने खुद सारे--

बैलून वलून लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने की ओर दिन रात का समय दिखाई दे रहा--

लगे दिखाई दे रहे हैं नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

ब्लैक कलर के अ देवाले बनी दिखाई दे रही ऊपर की ओर--

इधर फूल दिखाई दे रहे--

इधर एक खिड़कियां बनाई गई खिड़कियों में सामने की रोशनी आती दिखाई दे रही आजू बाजू कई सारे--